यहां पर एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है कुछ लोग उस पेड़ के नीचे खड़े हैं।

ये एक क्लासरूम हैं यहां पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।

लहसुन अदरक सारी सब्जियां दिखाई--

आसपास बहोत बड़े पेड़ पौधे हुव हुए हैं।